एक सेट के नीचे बोहोत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

तरबूज पपीता अन्नानास केले सेब सब दिखाई दे रहे हैं।